और साइड मै भी कुर्सिया लगी हुई है दो और पीछे बहुत सारे अलग अलग तरह के झाड़ है एक साइड मै टेम्पो रखा हुआ है।

यहाँ एक बगीचा है बगीचे मै पेड़ लगे हुए है छोटे बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए है और छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए है हरे रंग के।

यहाँ एक बहुत बड़ा खेत है उसपे बहुत सारे पौधे लगे हुए है छोटे से और कई जगह घास लगी हुई है कई जगह मिटटी पड़ी हुई है।

यहाँ एक बडासा मैदान है इस मैदान मै छोटे छोटी घास लगी हुई है यहाँ एक खुर्ची है काले रंग की --

और पीछे बहुत सारी मशीने पड़ी हुई है काले रंग की और पीछे एक दीवाल है पीले रंग की और एक व्यक्ति खड़ा है पीछे।

तो समुन्दर मै बहुत सारा पानी है पीछे बहुत सारे घर बने हुए है और पीछे बहुत सारे झाड़ पौधे भी है।

यहाँ दो खुडसी है खुडसी के नीचे झाड़ू है और सामने एक टेबल है टेबल के उपर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है।